पचास कम्प्युटर है यहां पर पाँच टीचर्स भी है टीचर्स बहुत अच्छे से कम्प्युटर सिखाता है और यहां पर एक अच्छा सर्टिफिकेट भी मिलता है।

दुकानें है यहाँ पर हर बक़्त गाड़ी गुजरता है यहाँ पर सड़क के किनारे भी छोटे-छोटे खाने का स्टॉल भी है।

आते हैं ऑटो ले लेते हैं जाते हैं।

ए हमारे इलाका का एक एक मार्केट एरिया है यहां पर फूल मिलता है ए मार्केट बहुत ही बड़ा है यहां पर मार्केट एक छाव के अंदर होता है।

रखा गया है यहाँ पर हेड टीचर के टेबल के सामने तीन सीट भी है जहाँ पर लोग बैठ के टीचर के साथ बात कर सकता है।

इंडिपेंडेंस डे में नेशनल फ्लैग उड़ाया जा रहा है इलाका के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए है और चर्च के फादर भी यहाँ पर है।

ये हमारे इलाका का एक सड़क है यहां पर सड़क मे दो रूट है यहां पर सड़क के किनारे पर ढेर सारे --

यहाँ पर एक लोग दुकान संभालता है ये दुकान सड़क के किनारे पे है यहाँ पर भगवान का मूर्ति भी मिल जाता है।

मिनीचर लाइट्स लगाया गया है ये भवन सड़क के किनारे पे है यहाँ पर एक नलकूप भी है।

यहाँ का साड़ी का क़्वालिटी बहुत ही अच्छा है इलाका का लोग इस दुकान से साड़ी खरीदता है।

यहाँ पर ढेर सारे जिम के इंस्ट्रूमेंट भी है।

ये हमरे इलाका का एक छात्र संघ संगठन है।

ये एक रूरल एरिया है।

यहाँ पर टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाता है यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग-अलग टीचर है।

ये हमारे इलाका का एक ऑफिस का कॉरिडोर है।

ये सड़क हर वक्त साफ-सुथरा रहता है।

इस सड़क बहुत ही साफ-सुथरा है सड़क के किनारे पे बहुत सारे छोटे-बड़े पेड़ पौधे है।